ये एक मछली का दुकान है।

यह एक पार्क जैसा दिख रहा है।

एक गाड़ी पार्क करके है एक बड़ा पेड़--

ये सारे लोग खड़े है।

रोड के बाजू में कई सारे घर दिख रहे हैं।

रोड के ऊपर एक कार दिख रही है।

पीछे बड़े बड़े पहाड़ है।

पहाड़ दूर है पेड़ों से बंद हो के हैं।

इधर एक काम चल रहा है।

ये एक एयरटेल ऑफिस है इधर बड़ा बोर्ड है वो बोर्ड पे एयरटेल ऑथराइज्ड पार्टनर करके लिख के है।

एंट्रेंस के ऐनक पे पेय योर बिल एंड रिचार्ज एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस कर के स्टिकर्स लगा के है।

इधर एक बड़ी बिल्डिंग है।

बिल्डिंग क्रीम कलर में है।

ये एक थिएटर एंट्रेंस है इसके ऊपर बुक माई शो गोकुल सेवन्टी एम एम करके लिख के हैं।

इस पिक्चर में एक बड़ी नदी दिख रही है।

इधर एक मंदिर दिख रही है।

इस पिक्चर में एक इंसान ठहर के है।

बड़े बड़े सीलिंग फैन तीन है।

ट्रेडमिल ब्लैक कलर में है।

ट्रेडमिल के पीछे एक मिरर है।

एक डायनोजर का स्टैचू है।

ईधर बड़े बड़े पहाड़ है।

एंट्रेंस में कई सारे सिढिया हैं।

तीन बेड्स लाल कलर मे है।

ये पत्ती दिख रही है।

ये सारे गाड़ियां पार्क करके है।

ये एक वेटिंग हाल है।

इधर कई सारे लोग बैठके है।

एक इंसान खड़े के है।

आदमीन बैग्स दिख रहे है।

इधर सब लोग शटल खेल रहे हैं।

ये सारे लोग शॉर्ट्स पहने हुए हैं।

ये एक बड़ा मॉल है।

ये एक किचन है इधर कई सारे मसाले दिख रहे हैं जो भी खाने में यूज करने के--

कई सारे सॉस के बॉटल्स हैं।

माइक्रोवेव दिख रहा है इसके ऊपर रेस्टल करके लिख के हैं।

डार्क रूल्स करके लिख के है।

एक औरत कुर्सी पे बैठी है।

इधर एक फूल दिख रहा है।

उनके पीछे ही अभी एक काला बड़ा रॉड है।

इधर थोड़े प पेड़ों को पत्ते नहीं है।

मंदिर के बाहर एक औरत मास्क लगा के खड़ी है।

एक ब्लू कलर का टब दिख रहा है।

ऊपर कई सारे सीलिंग फैंस है।

कई सारे गाड़ियां पार्क करके है एक औरत मास्क लगाकर दिख रही है।

इधर एक बिल्डिंग दिख रही है।

ये एक बड़ा हाल है।

हाल के सेंटर में एक पिलर है।

पिलर को टी_वी लगाके है।

इधर कई सारे बिल्डिंग्स हैं।

ये एक पेट्रोल पंप है।

डीजल डीजल करके लिखे हैं। दो नंबर करके एक बोर्ड है और चार नंबर करके एक बोर्ड है।

यह एक बड़ा डाइनिंग टेबल है।

टेबल के ऊपर कई सारे चम्मच और प्लेट्स है और टिशू पेपर्स भी हैं।

ये एक एंट्रेंस स्पॉट है।

एक एलो कलर का बोर्ड पिल्लर को रगा हुआ है।

एक इंसान बैठ के फूल बांध रहा है उसके बाजू में एक प्लास्टिक के बकेट है।

एक बड़ा हॉल है इधर कई सारे लोग बैठ के है।

विंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी वेटिंग एरिया करके लिख के है।

ये सारे लोग चेयर्स पे बैठ के हैं।

इस पिक्चर में एक बड़ा मैदान है।

एक इंसान पैदल चल रहा है।